यहाँ पे बहोत सारा सामान है जैसेकि कॉस्मेटिक्स सेए --

राखियाँ बेच रहे हैं बहोत सारे शैंपूस वगैरह है और सामने एक टेबल है टेबल के ऊपर काँच लगा हुआ है।

और लेफ्ट साइड में एक नटरा स्कूल्स करके एक बोर्ड लगा हुआ है सामने एक घर है घर के सअ --

ऊपर एक छत है उसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है बहोत सारे गाड़ियाँ हैं।

इस पिक्चर में एक अअ मेला जैसा दिख रहा है लेकिन ये सीढ़ियाँ है।

सीढिया के ऊपर एका अअ एक ब्रिज टाइप का है ब्रिज में चल के उधर जाने के लिए है सामने में इलेक्ट्रिक पोल है।

और पीछे एक रूम देख रहा है काँच का उसके अंदर एक फैन लगा हुआ है।

ये एक मेडिकल रूम का पिक्चर है ऊपर एक अअ टी_वी जैसा लगा हुआ है।

साइड में एक बेड भी लगा हुआ है मशीन में बहोत सारे पाइप लगा हुआ है मशीन के पास एक सालाइन का स्टैंक भी रखा हुआ है।

सामने कुछ बच्चे खड़े हैं तीन बच्चे आर्मी के यूनिफॉर्म में है।

अं रूम का वॉल एक ऑरेंज कलर है और एक पिंक कलर है।

एक रैक में अ तीन बड़े बड़े डिब्बे हैं उसमें ऑयल जैसा कुछ दिख रहा है नीचे छोटे छोटे कुछ पैकेट्स है।

रैक के और सामने उसके वॉल व्हाइट कलर का है।

ये एक बहुत बड़ा रूम दिख रहा है रूम के अंदर एक रैक रखा हुआ है।

लेफ्ट साइड नीचे कुछ अण्डे का ट्रे रखा हुआ है और कुछ ब्लू कलर बास्केट में सामान रखा हुआ है नीचे भी कुछ --

दुकान में एक बुक अ स्टोर का दुकान है जिसमें ऊपर एक मोथला --

दो लड़के बैठे हुए हैं एक लड़का अंदर खड़ा हुआ है।

पूरा मेडिसिन स्टोर का रेड और व्हाइट में बना हुआ है अंदर एक सर्कल जैसा बना हुआ है बहोत सारे रैक हैं।

ये एक रूम है रूम के अंदर वाइट कलर कााा वॉल है।

और सामने कुछ कार्पेट रखा हुआ है ब्लू और रेड कलर का।

उसके ऊपर कुछ एक एक तकिए है मिरर के दो साइड में दो पेड़ है।

उसके एक एक अ साइड में लोहे का एक एक चैन बना के रखा हुआ है ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे है।

ये पिक्चर में एक अअअ बैंक का पिक्चर दिखा हुआ है एच_डी_एफ_सी बैंक का एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने एक बालकनी है बालकनी में एक लेडिस खड़ी हुई है।

एक एक पेंटिंग लगाया हुआ है दो पोल दिख रहा है वो भी वाइट और ब्राउन का ही है।

साइड में एक मंडप दिख रहा है सामने एक अ टप मुश लोहे का स्टांड दिख रहा है।

आं सैंपल रखा हुआ है ऊपर में बहुत सारे फैन हैं।

एक लेडीज उनके बालों में फूल लगाए के बैठे हैं एक लड़का खड़ा है।

पीछे एक चेयार रखा हुआ है उसके सामने एक रेड वाइट का बाउंड्री लोहे का लगाया हुआ है।

तीन लोग खड़े है एक ब्लैक ड्रेस पे एक रेड ड्रेस पे और एक व्हाइट ड्रेस पे है। बहुत सारे --

साइड में एक लड़की टेबल पर बैठे हैं नीचे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं वाइट कलर का चादर है लेफ्ट साइड में एक टेबल है बैठने --

ये पिक्चर में एम पी एम करके एक बोर्ड लगा हुआ है शॉपिंग मार्ट है ए वांस टॉप सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है।

ये शॉपिंग मॉल के अंदर लाइट्स है रेयाक है।

ये पिक्चर में एक अअ घर है जहाँ करण यूनियन धर्मशाला करके --

उसके पत्ते हरे भरे दिख रहे हैं सुंदर आसमान दिख रहा है पेड़ के नीचे गोल टेबल जैसा बनाया हुआ है बैठने उठने के लिए --

और एक मशीन है जहाँ फ्लेक्स प्रिंट निकलता है।

ईट कुछ है कुएँ जैसा कुछ बनाया हुआ है उसके पीछे --

बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है पेड़ के पत्ते हरे भरे दिख रहे हैं ऊपर सुंदर आसमान है सूरज निकल रहा है।

और वो फैक्ट्री में एक लंबा सा बड़ा पोल है रास्ते में बहुत सारे लाइट का भी पोल है बड़ा बड़ा --

उधर साइड चार और इधर साइड चार लोग बैठे हुए हैं एक लड़का उसके कान सब लोग अपने कान पे हेडफोन लगाया हुआ है।

ये एक बेडरूम है रूम बहुत सुंदर लग रहा है एक वाइट कलर का बेड लगाया हुआ है पूरा उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखा हुआ है।

ये पिक्चर में एक वम्म बाउंड्री है।

बच्चों का खिलौना लगाया हुआ है।

रूम वाइट कलर का है उसके अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर लाइट्स लगा है।

सामनेएए कुछ लोग खड़े हुए हैं।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

ये एक मार्केट शॉपिंग मॉल का पिक्चर है ऊपर बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स लगा हुआ है।

अंदर बहुत सारे रैयाक है रैक में बहुत सारे सामान है।

चॉकलेट का एक ट्रे रखा हुआ है नीचे कार्टून में कुछ कोल्ड्रिंक्स रखा हुआ है।

बहुत सुंदर दिख रहा है ऊपर बहुत सुंदर सुंदर लाइट लगा हुआ है एक लाइट हैंगिंग हुआ है।

औऔर सामने एक बहुत बड़ा छत लगा हुआ है दो पेट्रोल पंप है।

एक ऑटो खड़ा है ऑटो पे तेल डाल रहे हैं साइड में दीवार है उसके पास बहुत सुंदर सुंदर फूल का गाछ है।

ये एक नाइट का पिक्चर है एक बालकनी जैसे बना हुआ है वाइट कलर का बैरिकेट लगा हुआ है।

ऊपर एक ब्राउन कलर का छत है छत पे सुंदर लाइट लगा हुआ है साइड पे बहुत सुंदर सुंदर घर है।